यहाँ पर पाँच-छे लोग बैठे हुए हैं लाइन्स से लाइन से चार लोग बैठे हुए हैं एक मैडम है वो इस साइड में बैठी हुई है अब --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो बना है पूल टाइप का बना हुआ है| उसके अंदर पानी भरा हुआ है पानी-पानी हो रहा है ऐसा और साइड में बिल्डिंग बनी हुई है| उसके साइड में बिल्डिंग बनी हुई है वाइट कलर की इस साइड ग्रीन कलर की बिल्डिंग बनी है।

यहाँ पर बहुत सारा मैदान है इसमें इसमें एक बस खड़ी हुई है यहाँ पे एक ग्रीन कलर की बस खड़ी हुई है ग्रीन एंड वाईट बस है।

यहां पर बहुत सारी गड़िया गड़िया रखी है और बहुत सारी गड़िया ही रखे है इधर बाइकें रखी है बहुत सारी इसमे और यहां पर एक बैंक है एच.डी.एफ.सी. बैंक बनी हुई है।